बाहर अंदर की दो शटर लगी हुई है शटर आधी लगी हुई है एक आदमी अंदर की ओर दिख रही है तथा कुछ महिलाये --

सफ़ेद गाड़ी दिखाई दे रही है सफ़ेद गाड़ी पर नीला झेंडा लगा हुआ है सफ़ेद गाड़ी के आसपास काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

तथा यहाँ पर नीचे पेड़ दिखाई दे रहे है हरी घास दिखाई दे रही है हरे भरे पेड़ भी दिखाई --

यहा पर एक चर्च दिखाई दे रहा है चर्च सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है उसपे नीले रंग का एक बॉर्डर बना हुआ है जिसपे --

नीचे एक बडासा दरवाजा दिखाई दे रहा है दरवाजा ऑरेंज कलर का और काले कलर का दिखा हो रहा है जिसमे डिजाईन बनी हुई है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के उपर एक बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग हलके नीले कलर की दिखाई दे रही है नीले कलर के पट्टे डले हुए है।

यहा पर प्लेट मे एक डोसा दिखाई दे रहा है साथ मे चटणी दिखाई दे रही है।

उपर बोर्ड लगा हुआ है लोहे की जाली दिखाई दे रही है एक हाथेडी के पास एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई है।